इस तस्वीर में एक फल की दुकान को दिखाया गया है जहां पे अलग अलग तरह की कई सारे फल रखे हुए हैं।

सामने दो तीन बाइक भी खड़े हैं एक व्यक्ति हाथ में छाता लिए वहां से गुजर रहा है।

उपर बहोत सी फूलों की लरिया लगी हुई है एक बड़ा सा घंटा भी लगा हुआ है।

कील में बहुत सारे डब्बे भी टंगे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक पुराने कार को दिखाया गया हैजो पूरी तरह से खराब हो चुकी है।

उसके सामने के पार्ट को एक मोटे से चैन की सहायता से निकालने की कोशिश कर रहे हैं।

और एक लंबी सी सीढ़ी भी बनी हुई है और बड़ी बड़ी चट्टानें भी हैं।

बहुत से कमरे भी बने हुए हैं कमरे में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं।

ऊपर कैमरा लगा हुआ है और ए_सी भी लगी हुई है।

इस तस्वीर में एक सर्विस सेंटर को दिखाया गया है जो की सड़क के किनारे है।

इस फोटो में एक बड़े से बस्ती को दिखाया गया है।

इस तस्वीर में एक बड़े से तालाब को दिखाया गया है जिसमें बहुत सारी नाव चल रही है और कुछ खड़े भी हैं यहां पे बहुत व्यक्ति बैठे हुए हैं।

इसके चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं एक छोटा सा घर भी है।

और कुछ सामान की तस्वीर भी बनी हुई है अन्दर एक नीले कलर की गेट लगी हुई है।

सामने एक बिजली का खंबा भी दिख रहा है और एक बांस का टुकड़ा भी रखा हुआ है।

बहुत सा चिप्स का पैकेट भी टंगा हुआ हैबाहर एक छोटा सा सीढ़ी भी रखा हुआ हैसामने बहुत से लोग हैं।

इस तस्वीर में एक बड़ी सी दुकान को दिखाया गया हैं जिसमें लकड़ी के बने हुए अलमारी में सारा सामान रखा हुआ है।

बगल में एक लंबा सा खंभा और है जिस पर एक घंटा टंगा हुआ है उसमें बहुत सारी सीढ़ियां बनी हुई है।

और बहुत से पेड भी है कई सारे व्यक्ती यहा पे टहल रहे है और हल्की हल्की धूप भी दिखाई दे रही है।

शीशे का गेट लगा हुआ है अंदर दो लड़कियां खड़ी हैं।

एक छोटी सी दुकान है जिसका गेट खुला हुआ है सामने चिप्स के पैकेट भी टंगे हुए हैं।

बगल में एक पेड़ भी है एक लड़का एक चेयर पे बैठा हुआ है।

उसके ऊपर एक लड़की खड़ी है जो भारतमां बनी हुई है वह भारत का तिरंगा लिए खड़ी है।

हमने ग्राउंड पे कुछ कागज के टुकड़े और ईट भी रखी हुई है।

इसके ऊपर तकिया और कंबल भी रखा हुआ है।

ऊपर लाइटिंग जल रही है। एक छोटा सा खिड़की भी है जिसमें पर्दा लगा हुआ है ।

तस्वीर में एक कपड़े की दुकान को दिखाई गई है जिसके ऊपर बैनर में एक देवघर वस्त्रालय लिखा हुआ है।

में से लच्छा पराठा हरी चटनी और एक फूल भी रखा हुआ है।

ऊपर एक ब्लैक कलर का डब्बा भी रखा हुआ है यह बहोत अच्छा लग रहा है।